क्रिश्चियन की साइन दो बॉक्सो में रखी हुई है वहां फादर्स की तस्वीरे बनी जस्ट फैन है स्पीकर वगैरा है।

जिस पर ब्लैक कलर के गद्दे है एक ब्लू कलर का है जिस पे ब्लू कलर का तकिया है।

दो बॉक्सेस हैं जिसमें ये मशीनें रखी हुई है ऊपर नीचे सैनिटाइजर रखा हुआ है पोस्टर लगे हुए है तीन दीवार पे एक--

घास वगैरा है बाइक वगैरा बाइक पे एक आदमी बै--

जाली लग रही लोहे की इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं एक स्टार बंद है इसमें पाउडर के डिब्बे हैं जो कि पहलवानों--

ये एयरटेल फोर जी के नाम से कोई बुक वर्ल्ड है वोडाफोन लिखा हुआ है।

सेनेटाइजर रख रखे हैं तौलने वाले मशीन एक सेल्फी ले रहा हैं।